सामने एक स्टेज बना हुआ है जिसमे एक कुर्सी लगी हुई है जिस के ऊपर केक रखा है जोकि पीले कलर केक है उसके चारो तरफ बलुन लगे हुए है जोकि गुलाबी कलर के ओर सफेद कलर के है।